पानी काफी रफ्तार से आ रही है।

टा टीने का टटीया है उसके सामने दो-तीन बाइक खड़ी है जो रेड कलर की है।

जो ब्लैक कलर की हैं यहां--

यहां पे कुछ लड़की है जो रेड और व्हाइट कलर के ड्रेस में है ये सभी प्रोजेक्ट --

पोजीशन के हिसाब से पिक्चर घिचवा रही है यहां पे बहोत सारी लड़कियां हैं यहां से सभी कोई--

अपने ठेले को ले जा रहा है और यहां पे कुछ बाइक है और एक साइकिल है।

यहां पे एक सोफा है और यहां पे--